यहां पर आपस में बातचीत करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

राइट साइड में कुछ गमले नजर आ रहे हैं वही उसके साथ कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर ऊपर काफी गुब्बारे नज़र आ रहे हैं गुब्बारे के नीचे लड़ियां भी लटकी हुई नजर आ रही हैं।

नीचे कुछ लोग लाइन पर खड़े हुए नजर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर राउंड टेबल भी रखा हुआ है जिसके चारों ओर कुर्सियां भी रखी हुई--

के नीचे ऐ_सी भी नजर आ रहा है।

एक अंकल जेब में हाथ डाले हुए तो दूसरा लड़का कमर पर हाथ रखे हुए है।

इस चित्र में काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं यहां पर सामने एक चूल्हा भी नजर आ रहा--

सामने लाल कलर की दीवार भीं नजर आ रहीं हैं कुछ लोग यहाँ पे टेहलते हुए नजर आ रहें--